यह ताजमहल का द्धार का फोटो है। यहाँ पर एक द्धार का बोहोत बड़ा द्धार है और कांच है और कांच जो है बनाया गया है।

यह एक स्टेशन का फोटो है जिस स्टेशन का नाम है रुदायन इस स्टेशन के आसपास बहुत सारा --